सब तरह-तरह के कपड़े पहने है सब तरह-तरह के दुकान है सब खरीद दारी कर रहे है।

नीचे घास-भूसा है अगल-बगल हरियाली ई सब दिखने में लग रहा है खूबसूरत एकदम।

यहाँ स्वेटर है दवा दुकान है एक बॉक्स धरा हुआ है वाईट जैसा डब्बा धरा हुआ है उसमें दवा है।

यह एक स्कूल है आगे बड़ा-सा ग्राउन्ड खड़ा हुआ है बगल मे मोटा सा साइकिल है साइकिल है।